यह एक रोड साइड एरिया है।

एक कोई महिला दिखाई दे रही है।

जिसको क्रॉस करके इस साइड से उस साइड जा सकते हैं।

अम जिनके कपड़े चमक रहे हैं सोने की तरह गोल्डन हैं।

एक औरत की तस्वीर छपी हुई है।

इसमें तरह तरह के खूबसूरत पेड़ हैं और तरह तरह की झाड़ियां हैं।